उस पर लगे हुए जीसस भी है एक चेयर है रेड कलर का।

एक रेड चेयर व्हाइट बोर्ड और कच्चा एक घर है जिस पर पोस्टर लगा हुआ है स्टार्टअप फाउंडेशन ।

और चिड़िया नजर आ रहा है।

और उसके सामने स्टेट बैंक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

और वॉल पर एक पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर का कलर ब्लू में है।

इस तस्वीर पर एक जगह नजर आ रहा है।

और एक मार्ग नजर आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।